सीढ़ी पे कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और दीवार पे पावर स्विच पॉइंट और लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

और विंडो से सनलाइट का रौशनी भी आ के दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत ज्यादा लड़की लोग का कपड़ा लगा के रखा हुआ है।

और यह फोटो में व्हाइट पिंक रख के हैं।

और उनमें से एक येलो शर्ट पहनने वाला चेयर में बैठ के है और एक लड़का पोल्स का सपोर्ट ले के व्हाइट टी शर्ट में खड़ा है।

और यहां का वॉल एक व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ भी दिखाई दे रहा है।

उस कार्पेट के सामने पंखा का बॉक्स भी रखे हैं।

और टेबल के सामने तीन चेयर रख के दिखाई दे रहा--

सामने में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और थोड़ा दूर में व्हाइट कलर का फेंसिंग और उसके सामने में कार भी दिखाई दे रहा--

यहां में एक चर्च का अंदर वाला फोटो दिखाई दे रहा है।

और सीलिंग पे बहुत सारे पंखे घूम के भी दिखाई दे रहा है।

रास्ते के ऊपर तरफ में और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जो की कारपेट ग्रास का है और ये प्लेग्राउंड का--

और पीछे में एक इंदौर स्टेडियम भी दिखाई दे रहा है।

छोटा वाला का सामने में एक वाइट कलर का भी रखके दिखाई दे रहा है।

और यहां सामने सड़क पे कुछ पानी भी जमा हो के दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में चार इंसान खड़े होकर दिखाई दे रहा है।

यहां में बहोत सारे लड़कियों दिखाई दे रहा है जिसमें से बहोत से लड़कियों का चेहरा ढक के रखा हुआ है।

उनमें से एक औरत बैठ के दिखाई दे रहा है जिसको बच्चा कुछ दे रहा है।

और सामने में बहुत सारा पेन लोग भीं रख के दिखाई दे रहा है ये फोटो मे।

के सामने बहोत पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे में ग्रीन कलर का स्टूल भी रख के दिखाई दे रहा है।